छोटी-छोटी घास भी लगी दिखाई दे रही है दिखाई दे रहा है झरने का पानी है खूबसूरत दिखाई दे रहा है सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है जो की खूबसूरत दिखाई दे रहा है खुला आसमान दिखाई दे रहा है जो की--

नल दिखाई दे रहा जो की बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है सामने हमें पेड़ लगा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें मैदान डला दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंकड़ पत्थर भी डेल हुए है और सामने खुला आसमान दिखाई दे रहा है --

हमें अंदर एक छोटा पौधा लगा दिखाई दे रहा है जो की बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है वहाँ पर छोटी छोटी हरी भरी घास लगी हुई है जो की बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं।

नेस्ट चार सो की जा एक ट्राली सी बनी दिखाई दे रही है जो पुराने जमाने की है और पीछे भी हमें बहुत सारी फोटो में दिखाई दे रही हैं।

-- दिखाई दे रहा है जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारी फूलो की मालाये टंगी हुई है जो कि दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सामान भी रखा हुवा है जो की दिखाई दे रहा है औ --

रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है और सामने हमें एक कूड़ा दिखाई दे रहा है और सामने हमें एक बस दिखाई दे रही है और सामने हमें खुला आसमान दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और सामने में--

दिखाई दे रही है सामने में एक बिल्डिंग बनी दिखाई दे रही है जो सुनहरे रंग की है सामने हमें छोटी-छोटी लाइटे भी लगी हुई है।

बड़ा तलाव दिखाई दे रहा है जो पूरा इसका पानी में नीला-नीला दिखाई दे रहा है सामने में नीले दिखाई रहा है जो बहुत खूब सूरत दिखाई दे रहा है और सामने में एक बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है जो खूबसूरत दिखाई दे रही है।

दो - चार व्यक्ति दिखाई दे रहे है और सामने ओ खुला आसमान दिखाई दे रहा है जोकि बहुत खुबसूरत दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें गैलरी दिखाई दे रही है यहाँ हमें कूड़ा - कच्चर भी डला दिखाई दे रहा है जोकि बहुत कुछ दिखाई दे --